एक लड़का कुछ बॉक्स के अंदर रख रहा है पीछे चैनल भी--

यहां पर शीशे में सभी सामान रखा हुआ है खिलौना है।

और सामने कोई बोड नजर आ रहा है लेकिन पेड़ होने की वजह से वो बैनर छुप गया है।

सामने गाजर दिख रही है नींबू रखा हुआ है और टमाटर भी दिखाई दे रहा है।